उनके बाएं हाथ में एक ब्राउन कलर की घड़ी बंधी--

इस दृश्य में एक लंबा सा मीनार नजर आ रहा है जो बहुत ही लंबा है और वह ब्राउन कलर की है।

पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है और बांस लकड़ियां भी दिखाई दे रही है।

सभी ने येलो रेड कपड़े पहने हुए हैं।

तार नजर आ रहा है मंदिर के ऊपर द्वार पे एक भगवान की पिक बनी हुई है।

बिस्किट एक बोतल नजर आ रहा है।